काम अपने सिका अपने टायर अकोटी अच्छा होती है।

जहाँ एक साथ बच्चा लोग के वोट कर सकते हैं हम पढ़ते लिखते हैं अपने जीवन जीने का सलीका सीखते हैं और बहुत ही अच्छी जगह होती है।

ये स्टेशनरी का दुकान है जहां पे आना जिसका नाम आनंद बुक है यहां पे एक साथ बहोत सारे स्टेशनरी के--

एक सारी का दुकान कान है जहां पे बहोत सारे कलर के सारे हैं जहां पे पीला हरा गुलाबी--

गाड़ी की है एक स्कूल जिसका नाम कुंदन इंटरनेशनल स्कूल है सामने बहुत अचे अचे फूल के पेड़ लगे हुवे है ।

यहाँ से उम् अपने मन अनुसार यहाँ से मछ्ली फेट के जाते है और घर पे बना के खाते है बहोत अच्छी --

बहुत सारे लोग घूमने आते है सब ढंग के लोग यहां घूमने आते बहुत ही अच्छी जगह --

आधार एनरोलमेंट और अपडेट सेंटर है ये--

एक लाईट जल रही है बहोत ही अच्छी जगह है।

हम ग्राहक को बेचे जाते है ग्राहक यहां आते हैं और अपने मन पसंद फ्रूट ले जाते है जैसे की सेब केला नारंगी--

येई और बहोत सारे फल जो भी ग्राहक को पसंद हो ग्राहक यहां से खरीद के ले जाते है।

अम्म ब-बुलु कलर के अक्षर में कुंचन रखी हैं में जो की स्कूल का नाम हो सकता हैं इसके टायर बहु थी अच्छे लग रहे हैं।

इयाय्ची एक सुखी मिर्च मेअदुलर बेच जिसमे पानी बहोत कम है और ये ओरत लोग जो कि --

हैं उम्म रसोई घर भी है जहाँ पे सिर्फ लोग अपना खाना बनाते और चेयर कुर्सी पे बैठकर यहाँ--

ये ब्लू कलर का टीशर्ट पहना हुआ है यहाँ बहुत सारे तरह के किताब मिलते हैं बहुत तरह के मैगजींस मिलते हैं बहुत तरीके के--

मिलते है यहां पे ये आदमी बुक्स खरीदने आया हुआ है जिसके पास--

बहुत सारे टायप कि मिठाइया रखी है जहाँ से लोग--

सुमिट कुमार का स्टोर बहत सारे सामने स्टोर भी है और सामने बहत ही बोहत ही ज्यादा वाल पे पोस्टर भी लगे है।

बिल बोर्डस भी देख सकते है और सामने बहोत सारी गाडियों को लगे हुए देख सकते है जो की--